यह एक बहुत ही बड़ा हल्का का दृश्य है इस हाल में एक काउंटर भी है।

बिल्डिंग के आगे एक बड़ा ग्राउंड है उसमें एक फुहारा भी है और चारों तरफ लोग हैं।

बिल्डिंग में बहोत सारे खिड़कियां बने हुए हैं खिड़कियों में कांच लगा हुआ है।

ये एक फूलों की दुकान का दृसय है यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल बिक रहे हैं और मालाये भी बिक रही है।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर की दीवार गोल्डन कलर की है।

दुकान में नीचे टाइल्स लगी हुई है दुकान में ऊपर बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं सीलिंग में।

व्यक्ति के बगल में तराजू भी रखा हुआ है और बटखारे रहे हैं।

नीचे में सूखी पत्तियां भी गिरी हुई है और नीचे में भी छोटे छोटे घास है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर क्रीम है।

बिल्डिंग के अंदर एक गाड़ी भी लगी हुई है।

दीवार पर ब्लू रंग की लाइट झालर लगे हुए हैं और लाइट भी सर्कल वाली लगी हुई है।

मकान के पीछे एक बड़ी पेड़ भी लगी हुई है।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है दुकान की दीवार पर पुट्टी किया गया है दुकान के सीलिंग में भी लाइट जल रहे हैं।

दुकान के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है।

दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है।

यह एक घर का दृश्य है घर की दीवार का कलर ब्लू है और दूसरे साइड पलस्तरा नहीं किया हुआ है।

यह एक बहुत ही बड़ा कमरा का दृश्य है इस कमरे की दीवार पर पुट्टी किया गया है और दीवार पर बहुत सारे व्हाइट रेड के बैलून चिपके हुए हैं।

लिंग में दो पंखे भी है और बहुत सारे लाइट जल रहे हैं इस कमरे में नीचे टाइल्स लगी हुई है।

दुकान में अंदर बहुत सारे वस्तुएं रखे गए हैं।

यह एक बर्तन दुकान का दृश्य है इस दुकान में बहुत अलमीरा बनी हुई है।

दूसरी साइड पीतल के बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं।